और यहाँ पे बहोत समान सारा सामान दिख रहा हैं टी_वी दिख रहा हैं।

और बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

वॉल भी दिख रही है छत भी दिख रही है बलब भी दिख रहे हैं।

बिजली की तार भी दिख रही है और बहोत सारी राखियां भी दिख रही हैं राखियों के कलर अलग अलग हैं।

पंडित भी दिख रहा है जिसने सफेद धोती पेहनी हुई है और बहोत सारी कर्टेन दिख रहे हैं फूलों की मालाए दिख रही हैं।

और बहुत सारी चेयर्स दिख रही हैं।

यहां पे आसमान दिख रहा है और बहोत सारी बिजली की तारे दिख रही है पेड़ भी दिख रहे हैं गाड़ी भी दिख रही है।

और यहाँ पे बहोत सारे टायर दिख रहे हैं।

और पेड़ भी दिख रहा है बिजली का खंभा भी दिख रहा है।

पिलो दिख रहे हैं और बेड के ऊपर बेडशीट भी डाली है जिसका रंग पर्पल है।